बिजली का वायर है दो झाड है।

मस्जिद है मस्जिद आला सिद्दीकी लिखा हुआ है ऊपर में गुम्बद बानी हुयी है निचे में दरवाजा है लोहे का ।

मस्जिद है पिलर खड़े है नीचे टाइल्स में नमाज रखी हुई है पंखा लगा हुआ है घड़ी लगी हुई है दिवालो में भी टाइल्स लगी हुई है।

कच्ची सड़क है आजू-बाजू मे बड़े-बड़े पत्थर पड़े हुए है झाड़ लगे हुए है एक छपरी जैसा बना हुआ है मकान बने हुए है।